यहां पर एक मेट्रो का पुल लगा हुआ है।

यहां कुछ बसें और रिक्शा जा रही है।

उसके माथे पर हल्दी लगी हुई है।

ये उनको इनाम दे रही है।

यहां गाड़ियां और ऑटो रिक्शा भी खड़ी है।

ये तस्वीर बहोत बड़े तालाब की है।

पानी भरा हुआ है पानी का रंग हरा दिख रहा है।

यहां बहोत बड़ा तंबू लगा हुआ है।

जिसका रंग हरा लाल और पीला है बहोत सारी--

ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

रखे हुए है यहां दिवारों पर लाल पेंट करा गया है।

कैश कार्ड लेन और भी कई चीजें लिखी हुई--

यहां कुछ पीले काले रंग के--

यहां रोड पर एक महिला भी दिख रही है।

ये तस्वीर एक कमरे की है।

ये तस्वीर एक कॉलेज की लग रही है।

यहाँ बहोत सारी गंदगी फैली हुई हैं और ये बहोत बड़ा गेट भीं हैं।

दुकान बहुत ही सुंदर और आधुनिक है इस पर ट्विस्ट दास टू लिखा हुआ है।

ये तस्वीर एक अस्पताल की लग रहीं हैं।

बहोत सारे पंखे लगे हुए है।

एक पीले रंग का बहोत बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है कमरों के दरवाजे ब्राउ--

इस पर बहुत सारे फल रखे हुए हैं यहां दो बाल्टियां भी रखी हैं।

ये तस्वीर एक बहुत बड़े इलाके की है इसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है ये काफी--

ये तस्वीर एक शॉप की है।

पारक में बहोत सारे पेड़ और झाड़ियां हैं।